यह होटल में बहुत अच्छी तरह से दिख रखा है प्लेट भी है चाय पीने वाला भी लाल कुर्सी भी है यहाँ टेबल में चद्दर बिछा है उधर टी_वी भी लगा हैं और टाइल्स भी नीचे बहुत अच्छी तरह से लगा हैं रूम भी बहुत बढ़िया दिख रहा हैं।

अच्छी तरह से बहुत बढ़िया दिख रहा है।

गुलाबी दिख रहा है बहुत अच्छी तरह से दिख रहा हैं।

होटल में बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है यहाँ टेबल भी है अच्छा वाला कुर्सी भी है अच्छा क्वालिटी के रूम भी है।

और पूरा काला आधी रात का समय है और ट्रेन भी है ट्रेन का पटरी भी दिख रहा है आसमान तो पूरा काला दिख रहा है पेड़ पौधे भी नहीं दिख रहे हैं।